यह जेंट्स की अंडरगारमेंट्स शॉप है जिसमे बहुत टाइप्स की वैरायटीज रखी हुई है| मिशन बॉक्स साइज है अमेरिकन इनसाइड आउट है।

ये एक कॉफी कैफे का लग रहा है जिसमें कॉफी की मशीन रखी हुई है और कुकीज़ चोको चिप्स के कार्टून रखे हुए हैं ब्लैक कलर के जार में चोको चिप्स डाले हुए--

और एक बस भी खड़ी है जिसका नाम ज्योति अ लिखा हुआ है। कुछ लोग अपना सामान ऑटो में भर रहे हैं।

और चेक्स कलर की शर्ट पहना हुआ है और साइड में मुँह करा हुआ है।

एक जाकी का ये लग रहा है जिसमे कई सारे भगवान राधा कृष्णा जी--